यह एक रोड है जिस पर बोहोत सारी गाड़ी आ जा रही हैं उह जिसकन देखने में बोहोत ही अच्छे --

नाद में चारा दिये हुएं हैं और कुछ पशु इस चारा को खा रहें हैं कुछ उम्म- देख रहे हैं।

बहुत बड़े-सा मकान है जिसके बाहर --

जो देखने में बहोत ही अच्छे हैं और बहोत सारे आदमी बाहर खड़े हैं और --

यहाँ पे एक बाघ को किसी करखाने में ना दिए हैं जो --